और मैदान में छोटे-छोटे घास दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो मैदान में टहल रहे हैं और खेल रहे हैं अगल-बगल में बहुत सारे आ हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये अन्दर मे आ कुछ जगह है जहाँ पे बेंच लगे हुए हैं दो जेंट्स और एक लेडीज बैठी हुई है।